और कुछ बड़े - बड़े पेड़ भी लगे हुए है ऊपर पानी की टंकी भी रखी हुई है बादल है।

हुहे है ऊपर बदल दिख रहा है पानी में किस्ती भी खड़े हुए है बाजू में--

कुछ ही हिरन भी है बहोत सारी वहाँ पर एक बड़ा सा बरगत का पेड़ है जिसकी डालियाँ नीचे लटक रही है।

लाइट वाले एक बड़ा टॉवल लगा हुआ है बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है कुछ लोग भी है।

और नीचे गटर जैसा कुछ लग रहा है जहां पर बहुत सारा पानी बरा हुआ है।